बकरी के बोहोत सारे झुंड है। उसमें उजला कलर का है कोई लाल कलर का है। बोहोत सारा पेड़ लगा हुआ है।

मॉल दिख रहा है।